कुछ आदमी बोरे को अंदर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं।

रेड कलर का सामने एक डब्बा रखा हुआ है बहोत सुंदर दिख रहा है।

यहां बहुत सारे बड़े छोटे बच्चे खड़े हैं।

मैं देख पा री हूँ यहां एक शोरूम है इसमें बहुत सारे समान अलमारी पर रखा हुआ है कुछ बु --